दे रही है पहाड़ दिखाई दे रहा है।

डलती हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस इमेज में बॉडी लोशन दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक ऑटो दिखाई दे रहा है।